और गुलाबी पिलर भी बने हुए है।

यहाँ एक पार्क दिखाई दे रहा है पार्क के बीचो बीच एक झरना दिखाई दे रहा है।

ऊपर नीला आकाश भी दिख रहा है और पानी में भी आकाश का कलर नीला दिख रहा हैं।

यहाँ पर एक टेंट लगा हुआ है जो काफी बड़ा है।

और ऊपर चक्र का निसान है इसके आजूबाजू कुछ झंडे लगे हुवे है और गेट केसामने एक स्टील की रेली लगी हुई --